कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं अंदर कुछ--

और कुछ सकला किलोई की तस्वीर है कुछ सामान भी--

और कुछ सूट लगा रखे हैं अलग अलग सूट है अलग अलग प्राइस के--